सामने से एक लाइट की तार आती हुई दिखाई दे रही है एंड नीचे वह एक पक्की फर्श दिखाई--

ये देखे जा रहे है यह देखने में बहोत अच्छा है।

यहाँ पर बहुत सारी बसों को एक साथ देखा जा सकते है दो बसे दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक बस दिखाई दे रहीं है जो की सफेद रंग की है और सामने भी कुछ को भी देखा देखा जा सकता है।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

झाल पे बहुत सारे लोगों को देखा जा सकता है अंदर की तरफ सफेद रंग की लाइटें जल रही हैं।

बाहर एक बड़ा-सा अ रेड कलर का कार्पेट जैसा बिछा हुआ है जिसपे यलो कलर की पट्टी की गई है।

और अगल-बगल की भूमियों में अअअ अगल-बगल के दीवारों--

जहाँ पर बहुत सारे लोगों को एक साथ देखा जा सकता है पीछे की तरफ एक बहुत बड़ी सी --

--और वह कुछ कर रहा है अगल बगल में और भी बोर्डे लगी हैं।

जिसके कारण पीछे के बहोत सारे इंस्ट्रूमेंट भी जीम करने के देखे जा सकते है।

दो इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है या एक हारमोनियम जैसा कुछ दिखाई--

प्रोड्यूस करता है अगल-बगल में और भी बहुत सारे सामानों को रखा गया है।

इनके कवर को भी पीछे ही रखा गया है नीचे--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

जहाँ पर एक लड़के की लड़की की देखी जा सकती है जो--

एंड पीछे की तरफ बहोत सारी लाइटें लगी हुई दिख--

ऊपर लाइट के तारे लगी हुई दिखाई दे रही है अगल-बगल में बहोत सारे --

यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन देखा जा सकता है जहाँ से एक ट्रेन गुजरती हुई दिखाई दे रही है।

पूरा बोर्ड नीले रंग का है जिसमें कुछ डिजाइन तरीके से कुछ व्हाइट कलर से लिखा हुआ है।